और ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है और इस जिम में लाइट भी जल रही है।

और इस फ्लैट के साइड में एक मशीन भी लगाया गया--

और ये सब फल और सब्जियां काफी ताजा नजर आ रहा है।

इस फोटो में पानी का बोतल भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें से एक गाड़ी को ऊपर लटका कर दो लोग इस गाड़ी को ठीक कर रहे हैंऔर नीचे दो गाड़ी का चक्का भी रखा हुआ है।

और कुछ मैकेनिकल समान भी रखे हुए है यह गैरेज देखने में काफी बड़ा लग रहा है।

और इस रेस्टोरेंट के बाहर एक दो लोग भी दिखाई दे रहे हैं और एक पीला कलर का पुतला भी खड़ा किया गया है।

और इनके दीवारों पर टाइल्स लगाया गया है।

यह फोटो ट्रेन गुजरने वाली जगह का है और इससे कुछ ही दूरी पर दो मंदिर नजर आ रहे हैं जिसे भगवा और सफेद रंग से पेंट किया गया है।

और इस चर्च के बाहर दो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें से कि एक चर्च में चिपकाया गया है और एक रोड के किनारे गाड़ा गया है।

यहां से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं।

यह किसी खटाल का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पर कि चार गाय और एक गाय का बच्चा दिखाई दे रहा--

यह किसी मस्जिद का फोटो दिख रहा है जिसमें बहुत सारे मुस्लिम बैठे हुए हैं और यह मस्जिद काफी बड़ा नजर आ रहा है।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

रोड से कुछ दूरी पर पहाड़ नजर आ रहे हैं और उसे पहाड़ के ऊपर एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

यह किसी होटल का फोटो हैजहां पर बहुत सारी लाइटिंग और दो पंखे दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में पानी में काफी सारे गुब्बारे तैरते हुए नजर आ रहे हैं।

और इस मौसम से पता चलता है कि अभी शाम का मौसम हो रहा है।

यह किसी नहर का फोटो है जहां एक साइड से पानी गिर रहा हैं और यहां पे बहुत सारे लोग नहां रहे हैं।

इस नहर के ऊपर बड़े - बड़े चट्टान वाले पत्थर है और इस नहर के ऊपर भी बहुत सारे लोग खड़े है।

यह किसी फ्लैट का फोटो है जो की काफी बड़ा है और यहां पर किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है और इस फ्लैट में एक सोफा और एक पंखा भी रखा हुआ--

और इस फ्लैट में टाइल्स भी लगाया गया --

और इस दुकान में बच्चों के सामान भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बैग पानी का बोतल और नाश्ता पैक करने वाला टिफिन भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ बच्चे आपस में मिलकर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में तरह तरह के वाद्य यंत्र नजर आ रहे हैं जैसे कि गिटार पियानो ढोलक इत्यादि।